ये एक गाय दिख रही है ये बंधी हुई दिख रही है यहाँ कुछ भूसा पड़ा हुआ है|

पेड़-पौधे दिख रहे हैं यहाँ एक ग्राउंड दिख रहा है।

एक ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं।